ग्रे कलर की गाड़ी को खड़े करके रखा गया है वहीं पे एक बाइक भी खड़ी है बहोत सारे घने घने--

ये छठ पूजा का गेट टाइप का बना दिया गया है जिस पे लिखा गया है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनापुर में आपकी--

एक घर दिखाया जा रहा है जोकि अभी बना नहीं पूरी तरह से ईंटा से उसे कंप्लीट किया गया है ऊपर में ढलाई वालाई कर दिया गया है।